इसमें जो इमेज है कई सारे महिलाये योगा कर रही है योगा में बैठे योगा का ड्रेस पहने है।

येल्लो कलर का बिल्डिंग है बिल्डिंग तो नहीं है सिंगल हाउस है ऊपर कुछ है मीनार जैसे --

यहां कुछ सेवन लेडीज खड़े हैं ऊपर सेडी जैसे हुए हैं।

तो बच्चे लोगों को मतलब डांस क्लास सिखा रहे हैं।

और ये डांसिंग क्लास का इमेज है फॉल है बहुत सारे लाइट है छोटे-छोटे बच्चे कलर ड्रेस बैंड है।

जो दरवान डिजाइन हुआ है दो दरवान खड़े हैं एंट्री गेट है ये --

ये एक डिस्ट्रिक्ट पोस्ट इंडिया का क्लियरेंस है वहां पे एक बच्चा या लड़का जो भी है।

ये जीम का इमेज है बहुत हाई जीम है बहुत सूंदर वहां पे एक वहा पे शायद जीम का ट्रेनर है जो अपना फोटो --

ये बस स्टेशन का पिक्चर है दो-तीन बिल्डिंग भी पीछे है पेड़ है पौधे हैं बहुत सारे बसेस है यहां पे जात्रिया लोग --

फंक्शन में आए हैं वहां पे घर सब है आसमान में अच्छा खासा मौसम है और --

दूर तक थोड़ा कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है एक आदमी बैठा हुआ है येलो कलर का टीशर्ट पहना है।

घूमने जा रहा है वहां प पेड़ है बहुत सारे छोटे-छोटे पौधे हैं और पानी है जल है सुंदर जगह एक बार घूमने जाना चाहिए।

ये गॅरेज का इमेज है यहाँ पे कार वॉश हो रहे है कार सर्वेसिंग हो रही है कार को टाइम टो टाइम सर्विसिंग करना चाहिए।

ये एक शॉप का बड़ा सा शॉप जो मॉल में होता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का शॉप दुकान इमेज है वहां पर बहुत सारे वाशिंग मशीन है।

और बालू है बहुत सुंदर जगह है पिकनिक बनाने के लिए घूमने के लिए रिलैक्स करने के लिए जगह आना ही चाहिए बहुत ही सुंदर जग --

कार सब बहुत पुराने हो जाते हैं आजकल स्ट्रैप रूल आ गया पंद्रह साल से पुराने कार को मतलब गवर्नमेंट ले मतलब --

और ये बहुत अच्छा माइंड प्लेस जगह है।

ब्लू कलर का डेमो ही मतलब कलर रहता है वेंको महाराष्ट्र का वर्ड का और यहां पे --

ओपन अकाउंट होते है करंट अकाउंट --

और वहां पे पूरा निकाल का खंडहर पत्थर ईट से जुड़ा नहीं हे वहां पे घास है छोटे छोटे पेड़ पौधे है।

यह खंडहर का इमेज है बहुत पुराने कल का खंडहर है आजकल --

वो सुविधाएं तकनी के लिए बहुत आरामदायक है।